इस दुकान मे बहुत से वस्त्र मौजूद हैं जो की ज्यादातर पुरुषों के दिख रहे हैं ।

इस तस्वीर मे हम एक बोहोत बड़े लोहे के द्वार को देख पा रहे है ये द्वार देखने मे बोहोत ही सुंदर ओर आकर्षित लग रहा है।

एवं इस कक्षा में एक भी छात्र एवं छात्राए उपस्थित नहीं है यह कक्षा पूरी तरह से खाली है।

इन पंछियों को देख कर मालूम चलता है की ये सभी पंछी किसी पिंजरे मे कैद है एवं इन सभी पंछियों का लोग खरीदने और बिक्री करने मे इस्तेमाल भी करते हैं।

तस्वीर में हम पंखे के निचले हिस्से को देख पा रहे हैं इस तरह के पंखे के निचले हिस्से को बनाने वाले। --

इस तस्वीर में हम एक बहुत ही मेहनती मजदूर को देखने पा रहे है जो कि अपना कार्य बहुत ही सरलतापूर्वक किए जा रहा है।

इस तस्वीर में हम एक पाइप के लाइन को ठीक होते हुए देख पा रहें हैं इस तरह के मजदूर बहुत ही मेहनत से अपना कार्य करते हैं।

इस तस्वीर मे हम एक तानपुरा देख पा रहे है इस तानपुरे का उपयोग कर लोग संगीत का मनोरंजन लेते है।

इस तस्वीर में हम एक खाद्य पदार्थ को देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए दे रहा है।